ये एक बहुत बड़ा सा मैदान है।

एक गिटार भी बना हुआ है जिसपर लाइटे जल रही है।

इसमें सामने एक आदमी खड़ा दिखाई दे रहा है।

साइड में एक हरे कलर का टेंट लगा है।

सामने की तरफ एक लाइफस्टाइल नाम की शॉप है।